और यहाँ पे उम्म अ मुसलिम लोग --

केंद्रे है झ पे एल.ई.सी. कराई जाती है उसके बगल में अर.जे. --

ये डुमरा के साइड में संकर चौक पास में इस ठेले को लगते है ये लोग रोज।

ये डेल्ही पब्लिक स्कूल का उम्म बोर्ड है यह सिमरा में स्थित है।

इस तस्वीर में हुंडई का बड़ा सा ट्रक नज़र आ रहा है |